बहुत से लोग बच्चे योग आसन कर रहे है।

पेट्रोल पंप एच.पी. का पेट्रोल पंप --

बहोत तरह के कार खड़ा है।

ये फोटो में एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है ।

इस पिलर की निरीक्षण करने के लिए है हाथ में कागज लिये हैं।